कुछ कस्टमर जींस देख रहे है।

के लिए पोस्टर भी लगा है।

ये मिठाई की दुखान दिखाई दे रही है।

ये एक युवती डांस करते हुए दिखाई दे रही है।